नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जहाँ पर सामने तक स्टेज दिखाई दे रही है जोकि सफेद रंग की है जिसपे गोल्डन रंग से आकृतियाँ बनी हुई है फर्श दिखाई दे रहा है जोकि हरे रंग का है वहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए है पीछे का तल दिखाई दे रहा है।

लडकियाँ खड़ी हुई है जिन्होंने हाथ से स्ट्रेचिंग कर रही है व एक्सर्साइज़ कर रही है रोड दिखाई दे रही है पीछे एक आकृति बनी हुई है जोकि कार्ड चक्र के समान हैं।

स्टेज दिखाई दे रही है स्टेज पर कई सारी लाइटें जल रही है पीछे तस्वीरें लगी हुई है लोग खड़े हुए बेस्ट पफोमेन्स दे रहे है नीचे से कुर्सी पड़ी कई सारे लोग खड़े हुए पीछे पर्दे दिखाई दे रहे है लाइटे जल रहे चारों तरफ़--

पीछे हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ो पर हरे-भरे पत्ते फैले हुए है बहोत ज्यादा मात्र में लोग निचे से बठे--

फर्श दिखाई दे रहा है फर्श पर कई सारे बच्चे खड़े है जो की हाथ ऊपर करके खड़े है बीच में एक आदमी खड़ा है जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट और नीले रंग की पेंट पहन रखी है पीछे परदा लगा हुआ है।